इस चित्र में हमे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है इस फूड ट्रक के साइड में कुछ गाड़िया खड़ी नजर आ रही है।

चित्र में हमे पेड़ नजर आ रहे है यहाँ का रास्ता काफी सुन्दर दिखाई देता है।

इस चित्र में हमे एक मंदिर नजर आ रहा है जिसकी पार्किंग में बहुत सारी बाईके खड़ी हुई है सामने का रोड बहुत खराब हालत में है पीछे नीले कलर के शैड नजर आ रहे है।

ये चित्र किसी पुराने महेल जैसा प्रतीत होता है जिसने एक झरोका नज़र आ रहा है चित्र में एक बड़ा सा छज्जा नज़र आ रहा है उसका पेंट पूरा निकला हुआ है।

ये चित्र एक उद्यान के बाहर का है जिसके बाहर कुछ गाड़िया खड़ी हुई है।

इसमें एक बिजली का खम्भा नजर आ रहा है जिसपे लम्बे लम्बे तार गए हुए है उस चित्र में आसमान नजर आ रहा है।

महल में हमे दो व्यक्ति खड़े हुए भी दिख रहे है।

इसपे एक पेड़ लगा हुआ नज़र आ रहा है आसमान नज़र आ रहा है काफी सुन्दर चित्र है ये।

इस पेट्रोलपम्प के सामने झंडे लगे हुए है जो काफी सुंदर लग रहे है आसमान काफी साफ नजर आ रहा है घास लगी हुई है।

यहाँ पर एक सड़क नजर आ रही है इसमे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हेे एक सुन्दर चित्र है।

इसके बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है यहाँ बैठने की व्यवस्था है एक सड़क भी बना हुआ है जिस पर हरी चादरों का शैड लगा हुआ है।